यहां हम देख सकते हैं कि यह एक बड़ा सा कमरा है।

देख सकते हैं जो स्पोर्ट शाईल स्टाईल की--

यहां हमें एक फूलों की दुकान दिख रही है। यहां पर पीछे काफी सारे रंगबिरंगे लाल पीले हरे--

यहां हम देख सकते हैं कि यहां पर एक आदमी सामने शीशे में अपने मोबाइल से फोटो खींचते हुए दिख रहा है।

और ट्रेन की दोनों साइड पेड़ पौधे हैं मतलब ट्रेन पेड़ पौधों से--

यहां पर हमें यह एक होंडा वालों की दुकान दिख रही हैं यहां पर लिखा हुआ हैं रोहिणी एंटरप्राइजेस स्टील ।

कई औरते बैठी हुई है और हाथ में उन्होंने प्लेट में--

और पीली तिरपाल से इनको ढका हुआ है।

यहां पर हमें खाने की कुछ खाली प्लेट दिख रही है।

हर प्लेट में एक एक स्पून रखा हुआ है।

देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थरो के ऊपर चार लोग--

घास फूस और पेड़ पौधे हम यहां देख सकते है।

और यहां पर पानी बहुत सुंदर लग रहा है।

यहां हमें एक सुपरमार्केट नजर आ रही है।

आदि और भी काफी सारा सामान रखा हुआ हम--

और एक कच्ची दीवार यहां नज़र आ रही है।

और सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

सोफे के ऊपर हम कुशन रखे हुए देख सकते हैं।

हॉस्टल के कुछ बच्चे बैठकर प्रोजेक्ट बना रहे हैं और टीचर खड़ी होकर देख रही है।

नीचे की और भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।